सामने एक आदमी खड़ा है।

जिम के अंदर तीन बॉक्सिंग बैग दिख रहे हे है।

दलँग के नीचे नदी भी दिख रही है।

खिड़की पर तीन काले बोर्ड लगे हुए हैं।

दूर में पहाड़ भी दिख रहा है।

खेतों के तरफ दो टॉवर भी दिख रहा है।

साइड मे बहुत सारी गाड़ियां पार्क की गई है।

गेट के बाहर एक आदमी खड़ा है।

दूर में बिल्डिंगें दिख रही है।

तीन लोग योगा करते नजर आ रहे है।

नीचे फूलों का टब भी दिख रहा है।

नीचे की तरफ एक जहाज दिख रहा है।

कुछ तार भी दिख रहा है।

इस तस्वीर पर एक जिम दिखाया गया है।

जिम के अंदर जिम करने की मशीन दिखाई दे रहा है।

नदी पर दो नावे दिख रही है।

तस्वीर पर चार गाड़ियां दिखाई गई है।

बिल्डिंग के छत पर दो टंकी दिख रहा है।

पुतले का चेहरा ढका हुआ है।

पीछे अलमारी में कपड़े सब रखे हुए है।

टेबल पर एक क्यू_आर कोड भी दिख रहा है।

एक आदमी ने हाथों पर प्लास्टिक लिया हुआ है।

घर के सामने दो कचरे के डिब्बे रखे हुए है।

रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारी चेयर भी दिख रही है।

इस तस्वीर में एक रूम दिखाया गया है।

दो औरतें मूर्ति की पूजा करते दिखाई दे रही हैं।

मूर्ति में पीले रंग की माला लगाए हुए है।

आसपास बड़े पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में एक काले रंग का चेयर दिखाया गया है।

साइट पर एक लाइट का बोर्ड भी दिख रहा है।

पीछे की तरफ शोकेस में पानी का बोतल सजाया हुआ है।

मशीन के सामने तीन चेयर दिखाई दे रहे है।

छतरी के ठीक पास एक आदमी काले रंग के चेयर पर बैठा है।

रोड पर बहुत सारी गाड़ी पार्क की गई है।